उसके ऊपर तीन लाइट दिखाई दे रहा है साड़ी के बीच में एक टी_वी का स्क्रीन पे कुछ तस्वीर दिखाई दे रहा है।

इसमें एक पेट्रोल पंप का रात का सीन दिख रहा है दो पेट्रोल जिनपर लाइटिस भी जल रही है।

कुछ काउंटर और कंप्यूटर और कुर्सियां नजर आ रही है दिवाल पर एक देवी देवता का तस्वीर भी दिख रही है।

इसमें एक जिम या ट्रेनिंग एरिया दिख रहा है रेड में फ्लोरिंग लगी है।

इसमें एक आदमी जिम पे सेल्फी ले रहा है उसका तस्वीर ब्लर है लेकिन उसके कर्ली बाल दिख रहा है।

एक व्यक्ति फोन पे बात कर रही है और एक के सा पास बैठी है।

बोर्ड पर रंग बिरंग लाइटिस लगी है जो आकर्षण लग रही है।

इस तस्वीर में बड़ा भवन दिखाई दे रहा है जो सरकारी कारजाले कॉलेज या सामुदायिक भवन जैसा लग रहा है।

इसमें एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें बांबू का सेल्फ फोल्डिंग लग रही है।

ऊपर एक बोर्ड पे बस के पार्ट बिकने के जानकारी है।